एक एक लोहे का खंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा जिस खंबे में कई सारी वायरिंग यहां से वहा गई हुई दिखाई दे रही है वायरिंग ।

ये लाइटिंग घुसे हुए टमाटर मे भरती हुई दिखाई दे रही है जो टमाटर बेच--

सामने में किसी दुकान की मूर्तियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

कांच का गेट लगा गेट के अंदर एक इंसान ऊपर के लाइटिंग वाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही--

जलती हुई दिखाई दे रही हैं लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही हैं।